यह रेस्टोरेंट है दीवाल बहुत डिजाइन दार दिख रहा है यहां पर हमें शीशे लगे हुए देख सकते हैं।

बहुत सारे फूल की माला से सजे हुए नजर आ रहे हैं।

वाटर फिल्टर वाला अ मशीन है और एक बेसिन दिखाई दे रहा है।

पेड़ के नीचे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे है यहां पर हमें साइकिल रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक बड़ा सा खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा।

एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है आगे बहुत सारा सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगा हुआ नजर आ रहा है दो बड़े बड़े मॉनिटर दिख रहे है।

अंदर बहोत सारे लाइट्स लगा हुआ नजर आ रहा है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।